पीछे तीन रेड कलर का टीना वाला एंड येलो कलर का घर है।

और फिर आपका साइड में वॉल देके बीच में गार्डनिंग भी किया है।

पक्का घर का टीना भी कलरिंग टीना है येलो कलर ग्रीन कलर रेड कलर ।

बाहर बहुत ज्यादा आदमी खड़ा है।

ये एक ट्रक खड़ा हुआ है यहां पर।

जो की पहाड़ का बीच में आपका घर है।

और मैरून कलर का पर्दा लगा हुआ है।

और नदी ग्रीन कलर और वाइट कलर का है।

बिल्डिंग है ये दो तरह से बिल्डिंग है।

और एक आदमी खड़ा है बैग लेके।

सोफा है चेयर है ब्लैक कलर का सोफा ।

और खिड़की भी है ऊपर--

बीच में दरवाजे पर फूलों का माल से सजाया हुआ है।

यहां टेबल चेयर है रेड कलर का।